एक डोर खुला है और एक डोर बंद है बीच में पोस्टर लगा हुआ है जिसमे डॉक्टर एल कुमार लिखा हुआ है।

बीच के मिडल में भी एक ट्री है नीचे मिट्टी है और एक कुछ कूड़ा भी है दो लोग जो है वो पार्क में बैठे हुए है।

बाहर से एक ईमारत है नीचे घास है और एक रास्ता बना हुआ है घास पर--

इस पिक्चर में पेट्रोल पंप है जहा पर गाड़ी है कुछ बाइक्स है कुछ लोग है।

कुछ लोग गाड़ी ठीक कर रहे है आगे एक डस्टबिन भी है एक आदमी चल रहा है ऊपर से इसकू छत बना हुआ है।

इस पिक्चर में जो है भगवान है उसके ऊपर बहुत सारी फूलों की मालाएं हैं बहुत सारे कलर्स की मालाएं लगी हुई हैं और बहुत भीड़ है लोगों की।

पिंक कलर का स्कूटर बना हुआ है बहोत सारे खिलो ने है इसमें जो बॉक्सेस के अंदर है स्पर्स भी दिखाई देते है इसमें--

नीचे जो एक पेड़ भी है कुछ टावर्स है जिन के ऊपर लाइट्स भी है।

चार टेबल्स बने हुए है जिन पे ऊपर मॉनिटर्स लगे हुए है इन पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए है दीवार पे नाइन एट और सेवन लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में बहोत बड़ी पार्क है जिस पर ग्रीन कलर का ग्रास है।

आगे तीन बाइक्स हैं एक बाइक पर एक आदमी है ऊपर से बहोत सारी वायर्स है दूर से एक गाड़ी भी दिखाई देती है और पेड़ लगे हुए है।

बहोत सी बाहर जब यहाँ पर ट्रैफिक दिखाई देता है और बहोत सारी बोर्ड्स लगी हुई है।

और इधर जो है नीचे से घास है ऊपर आसमान है पीछे से कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई देती है।

पिक्चर में बोतल है लाइटर है ऐशट्रे है--

और दूसरी गाड़ी है बहुत सारे आदमी है जो बस के ऊपर भी चढ़े हुए है उन्होंने बहुत सारा सामान उठाया हुआ है।

एक बाइक भी दिखाई दे रही है बहोत सारे पेड़ भी है।

इस पिक्चर में बहोत बड़ी सीडी लगी हुई है एक बाइक भी है एक रोलर कोस्टर जेसा लग रहा है और कुछ टॉवर्स है पीछे--

रेस्टोरेंट है ऊपर से फैन लगा हुआ है और कुछ लाइट्स लगी हुई है खिड़की भी है।